यह तस्वीर में श्रमिक जो है घर बनाने के लिए एक ढांचा तैयार कर रहे हैं सभी को घर की आवश्यकता होती है।

यहां पर पर्यटक लोग आते हैं और यहां पर ज्ञानी लोगों के उपदेश को सुनकर उसका पालन करते हैं करते हैं और यहां पर अनेक विद्यार्थी आते हैं क्यूकि यहां पर विश्वविद्यालय भी स्थापित हैं|

एवं स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ पर जाते हैं और विभिन्न प्रकार की योगा एवं एक्सरसाइज के द्वारा अपने मो मोटा- मेटा- मेटाबॉलिज्म ग्रेड को फिट रखते हैं।